यहाँ एक रूम है यहाँ पे दो चदर है और दो तकिये है और एक बेडशीट है जिसपे हमलोग सोते है और यह इसमें रात को सोते है और यह एक रूम है बोहोत --

यह एक दुकान है। इसमें समानें मिलती हैं और यहाँ पे बे बैग कलम कॉपी स्लेट पेंसिल रबर मिटौना सब कुछ मिलता है और यहाँ पर स्कूल की सारी जरूरतों की समानें मिलती हैं।

बांस भी रखे हुए है और यह घर अभी बन रहा है।

यह एक मार्केट है जो जिसमें कुछ लोग गाड़ी से आ रहें हैं जा रहें है। कुछ लोग पैदल भी आ रहें हैं और कुछ दुकानें भी है जहाँ लोग सामान खरीद रहें हैं और बेच भी रहें हैं और बहुत बड़ा दुकान --

यहाँ राधा कृष्ण जी की मूर्तियां है और यह बहोत सुंदर है।